यहाँ पर एक काले रंग के कुत कुत कुत्ता दिखाई दे रहा है जो बहुत --

अंदर जा रहे है और कुछ लोग बाहर ही बैठे है यहाँ की खिड़कियाँ सरियों की बनी हुई है जो की लोहे की है।

कुछ ईंटों के पत्थर भी पड़े हैं।

यहाँ पे एक ए.टी.एम. भी है यहाँ पे एक पीला पोस्टर दिखाई दे रहा है आस-पास बहुत सारे घर बने हुए हैं।

अम्म नारंगी रंग का दिखाई देखे दे रहा है यहाँ का लाल रंग का है जो --

लाइट जल रही है इस दीवाल का रंग सफ़ेद और लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसके अंदर कैमरे भी चल रहे हैं।

यहाँ पे एक आदमी उनपे दवा डाल रहा है।

यहाँ पे एक अलमारी भी रखी है यहाँ पे एक भी दिख रखी है यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यही पे एक खम्भा है जिनसे कुछ तार लगे हुए है।

यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई है जो इंचो ऑरेंज रंग की दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग है यहाँ पे एए कुछ लोग अपनी फोटो निकलवा रहे हैं यहाँ पे कुछ बोरी पड़ी हुई हैं पीछे बहोत सारी सरिया लगी हुई हैं।

यहाँ की फर्श पे टाइल्स लगे हुए है।

एक बाइक भी खड़ी है।